और टेबुल भी लगाया हुआ हैं और पीछे पर्दा भी दिखाई दे रहा है और लाइट भी लगाया हुआ है।

यह एक पोस्ट ऑफिस का दृश्य है जिसके दीवार में रेड कलर का पेंट किया गया है और खिड़कियां भी बनाई हुई है।

दो बस भी लगाई हुई है जिसपर पीला कलर का पेंट भी किया गया है।

बच्चे भी बैठे हुए है और बाल्टी भी दिखाई दे रहा हैं जो कि लाल कलर का है।

टेबुल भी रखा हुआ है पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसपे वाइट कलर का पेंट भी किया गया है।

और बांस का खंबा भी दिखाई दे रहा है शीशे के डब्बे में लड्डू भी रखा हुआ है जो की पीला कलर का है।

यहां पे बहुत बड़ा गेट दिखाई दे रहा है जिसपे बहुत सारे डिजाइन बनाया गया है और पेंट भी किया गया है ।

और एक दीवार में बनाया हुआ है जिसपर व्हाइट कलर का पेंट किया गया है और लाइट लगाया गया है।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

यहां पे बहुत सारे रंग बिरंगे लाइट लगाए हुए हैं और बहुत सारा फूल भी लगाया हुआ है।

भी दिखाई दे रहे हैं और ऊपर लाइट भी लगाया हुआ है।

टेबुल के ऊपर प्लेट भी रखा हुआ है जो की वाइट कलर का है।

यह एक स्टेज का दृश्य है जिसपे बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

दीवार में वाइट कलर का पेंट भी किया गया है और यीशु मसीह का भी चित्र लगाया गया है।

यह एक माल का दृश्य है जहां पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है जो की पूर्ण रूप से व्यवस्थित करके रखा गया है।

और तार भी टांगा हुआ है और पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और बैठने के लिए झूला भी बनाया हुआ है और पीछे बच्चों को खेलने के लिए भी --

और सामने ब्लैकबोर्ड भी दिखाई दे रहा है। जिस पे ब्लैक कलर का पेंट भी किया गया है ।

बिल्डिंग में वाइट कलर का पेंट भी किया गया है और पोस्टर भी टांगा हुआ है।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

और ऊपर लाइट भी लगाया हुआ है और पंखा भी लगा हुआ है।

और बहुत सारा सामान रखा हुआ है जो कि ब्लू कलर का और वाइट कलर का है।

दुकान में कुरकुरा भी लगाया हुआ है और लाइट भी लगाया--

यह एक रेस्टुरेंट का दृश्य है जिनमें बहुत सारा कुर्सी लगाया हुआ है।